दो ल बड़े स्तूप हैं एक चौड़ा स्तूप है उसमे दो लोहे की खिड़कियें हैं दो झंड एक झंडा है हरा कलर का।

ये मस्जिद का प्राइवेट रूम है जिसमे मशीने लगी हुई हैं अलमारी रखी है लाइट्स लगी रोशन दान है व्हाइट ।